यहा पे एक नदी दिख रहा है। नदी बहोत सुन्दर है। नदी के ऊपर एक ब्रिज है।

कुछ महिला भी है। ऑफिस की दिवार पे एक पोस्टर लगा हुइ है। उसमें एक महिला की फोटो है।

कुछ महिला भी है। आस-पास में कुछ पेड़ दिखती हैं।

यहाँ पर एक विवाह अनुष्ठान हो रहा है। चार पास में बहोत फूल से सजाया है। बहोत सारी लाइट्स भी है।

पुलिस स्टेशन के आस-पास में बहोत सारी पेड़ हैं।

ऊपर में खड़ा है। एक लोग नीचे में खड़ा है।

ये उतर प्रदेश की मुज़फ्फरनगर में है।

बिल्डिंग में बहोत सारी लाइट्स जल रहा है।

में फैन भी है। दूर में एक बड़ा-सा विंडो दिख रहा है।

नदिया के पाड़ में कुछ पत्थर के टुकड़ा पड़ी हुई है।

इधर पे बादशाह की क्लासरूम दिख रहा है।

क्लासरूम बहोत सुंदर है। क्लासरूम में बहोत सारी चेयर टेबल हैं।

डोर की दज्जा खुली हुई है।

रेस्टोरेंट के सामने बोहोत सारे चैयर टेबिल है।

यहाँ पर एक बड़ा-सा रास्ता है। रास्ता में बहोत सारे लोग खड़ा हैं।

एक ऑटो है। एक प्राइवेट कार है।

आईन की सामने एक लड़के चेयर में बैठी हुई है।

कुछ पुराना मूर्ति है।

इधर पर एक बड़ा सा फील्ड दिख रहा है। फील्ड बहोत बड़ा है।

दूर में एक मालगाड़ी दिख रहा है।

और एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप में कुछ बाइक दिख रहा हैं।

एक पेड़ के नीचे एक मारुती भी है।

बीच की दीवाल में कुछ साइकिल खड़ा हैं। एक लोग भी खड़ा है।

इधर एक लाज मे एक विवाह उनुस्थान हो रहा है। दूर मे एक स्टेज दिखती है।

चर्च के पास में कुछ दुकान दिख रहा है। चर्च के सामने दो साइकिल खड़ा हैं।

कुछ पेड़ दिखती है। सामने एक रास्ते में एक लोग साइकिल से जा रहा है। एक लोग की हेयर दिखती है दूर में।

एक टेबल में एक वाटर बॉटल दिख रहा है। दीवाल में एक --

कंप्यूटर के सामने एक लड़की चेयर पर बैठी हुई है।

पास में कुछ इलेक्ट्रिक की स्विच है। दूर में एक --

इधर एक फील्ड है। फील्ड बहोत बड़ा है। फील्ड में कुछ लड़के क्रिकेट खेलती हैं।

इधर पर एक कोचिंग सेण्टर है। कोचिंग सेण्टर बहोत बड़ा है।